लोग अंदर को बाहर को सभी जगह लोग खड़े है।

जोकि सामने एक काउंटर रखा हुआ है सामने चेयर पड़ी हुई है एक आदमी उसपे बैठा हुआ है।

हैं जिसमें लड़का एक मंदिर के बाहर खड़ा है।

ये पिक्चर एक गुरु नानक यूनिवर्सिटी की पिक्चर है जो कि बहुत ही बड़ी जगह--

ये हॉल में रखा हुआ है उसके पीछे भी कुछ लिखाफे में जो है रखा हुआ है बैंक जो है ये लग रहा है।

यह जो पिक्चर है एक फैक्ट्री की पिक्चर है जिसमें बड़ी बड़ी मशीने लगी हुई है लोहे की।